इस तस्वीर में हम देख सकते है कि यहां--

यहां बाहर आंगन में दो कुर्सी रखी गई है।

की यहां एक मंदिर दिख रहा है।

कार्य चल रहा है और यहां सड़क मे एक

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग दिखा--

यहां पर छे कुर्सियां लगी हुई है यहां पर बहोत अच्छे लकड़ी का कार्य किया गया है।

जो कि एक नए ही लुक में बनाया गया है।

और यहां पर मोबाइल्स की एसेसरीज भी मिलती है जैसे कि यहां पर लिखा है टेंपर्ड क्लास एंड मोबाइल कवर ऑल आर अवेलेबल देअर।

इस तस्वीर में हमें दिख रहा हैं कि यहां एक मेला लगा हुआ है।

इमारत बहोत ही बड़ी और खूब सूरत है।